पेट्रोल पंप अब अधिकतर हमारे पूरे देश में प्राप्त हो गए हैं।

पेट्रोल पंप हमारे गाड़ियों में डीजल पेट्रोल आदि की सुविधा प्रदान करते हैं।

जो की भगवान जी की पूजा करते हैं|